इस मे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो की लाइन में लगे हुए हैं और कुछ सामने बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

ये नाइट का सीन है| इसमें एक येल्लो कलर का ऑटो चल रहा है और उसके जस्ट साइड में पेड़ लगा हुआ है ।

और इसमें करीबन छः - सात फ्लोर हैं और जो कि पिंक ब्लू और व्हाइट कलर के पेंटेड हुआ है।

सामने एक एटीएम एटीएम दिख रहा है और वोल्टास की बिल्डिंग जैसी लग रही है और सामने से एक व्यक्ति आ रहा है उसके आसपास बाइक्स रखी हुई है और सड़क है।

ये एक गेप दिख रही है जिसमें एक व्यक्ति फोटो शूट करवा रहा है अपनी उसके दोनों हाथ ऊपर हैं जो कि चट्टानों पर रखे हुए हैं और इस इसमें गैप में अँधेरा है।

ये एक फॉरेस्ट मे एक पूल टाएप का बना हुआ है जो की नेट का‌ ब्रिज बना हुआ है जो की हिलता होगा।